जहां कुछ काफी भीड़ लगी हुईं हैं।

यहां सामने कुछ एक मशीन पड़ी नजर आ रही है।

और कुछ क्रीम कलर के दरवाजे हैं।

ये एक कमरे में कुछ लोग खड़े अरदास कर रहे हैं और नीचे एक--

जे एक फूलों की माला की दुकान है।

एक लोहे के जो पिलर को लगाते हैं वो प्लेटें नजर आ रही हैं।

और एक लड़का इधर को आ रहा है।

और नीचे जो बहोत बढ़िया पार्क का दृश्य दिख रहा है और काफी सारे इधर क्रीम कलर के पिलर हैं।

और होर भी बहोत सारे कपड़े जो हैंगर मे टंगे हुए है।

और भी काफी जानवरों की अभी मूर्तियां हैं।

यहां पे काफी बड़ी जो ये मॉल है।

शीशे में एक वाश बेसिन नजर आ रही है और एक बिजली बोर्ड के प्लग दो नजर आ रहे हैं।

उसके ऊपर भी काफी हरियाली नजर आ रही है।

यहां का पानी का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है।

और मोटरसाइक ल पर एक फ्रंट पर आदमी बैठा हुआ है।

साइड पे जो बड़े बड़े दख्त लगे हुए हैं--